और इधर में ये एक पेड़ खड़ा हुआ है और उधर में भी एक दीवाल सी दिखाई दे रही है।

देखिये यहाँ पर एक दुकान में बो --

और इधर में ये बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए है और इधर में ये घास फूस भी डला हुआ है जंगल में।